ये लाइब्रेरी की फोटो है। यहाँ स्टूडेंट जाके पढाई करते है। यहाँ माहोल बोहोत शांत रहता है। एग्जाम की तयारी करने के लिए भोत अच्छी जगह है।

ए.सी. हर चीज लगा होता है और ए कैमरा भी होता है और यहाँ पे --

ई यहाँ पे हमेशा मछलियों का दुकान लगा रहता है और बोहोत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मछली लेने और यहाँ पे ताजा और एकदम --

ये फा पार्क की फोटो है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं सुबह शाम और यहाँ पे बहुत तरह के झूले लगे हुए है और बहुत --

और ये गरमी जाड़े बरसात सारे सीजन में मिल जाता है और ये दो तरह का होता है एक जेड रेड वाला और एक व्हाइट वाला।

यहाँ पे ताज़ी हरी सब्जियां मिल जाती है और यहाँ पे सारी सब्जियां मिल जाती है हैं। यहाँ पे दूर दूर से लोग सब्जी खरीदने आते हैं और यहाँ पे थोक रेट --

दी लेडीज जेंट्स किड्स वियर सब मिल जाते हैं और यहाँ पे किचन के सामान भी मिल जाते हैं और यहाँ पे --

ये बहुत अच्छी होती है और मीठी होती है ये खाने में बहुत अच्छी लग --

और यहाँ बोहोत दूर दूर से लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते है। यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है।

ये अम आम अमीन बुक डिपो की दूकान है। यहाँ पे सारी बुक मिल जाती है और यहाँ पे स्टेशनरी के सारे --

और एक बस में बहोत --

ये मार्ट की फोटो है। यहाँ पे लेडीज जेंट्स और किड्स वियर के कपडे मिल जाते हैं। यहाँ पे पार्टी शादी के कपडे भी मिल जाते हैं।

ये प्रतिभा लाइब्रेरी की फोटो है। यहाँ पे वाईफाई और आर.ओ. वाटर की सुविधा है यहाँ पे।

और बाल स्ट्रैट और कर्ल करवाते कर्ल और हाईलाइट कराते है यहाँ पे बहुत अच्छी कटिंग होती है और --